हाँ अच्छा रूम ला दिखत हवे गे टाइल्स माने मार के लाइट झका झक करके इतना मस्त दरवाजा ला दिखत हवे गे।

पूरा डब्बा हवे के कचड़ा के के यहाँ सफाई होता का गे ? पूरा यहाँ बॉउंड्री लगथे गे पूरा अच्छा दीखते का यहाँ मनी--

इतना अच्छा बनवाला हिलत गुलत हवै गे।